है और बहुत ही कुछ चीजें यहाँ से बहुत ही आसानी से सभी चीजों का उपलब्ध होता है।

यह एक झरना टाइप है ये पानी बहुत ही ऊपर तक जा रहा है।

यह गेत गेट है बहुत ही बड़ा है और गेट लगाने से कोई भी अंदर आने नइ --

कम दाम में भी उपलब्ध है यहाँ पे उधार दिया जाता है।

यहाँ तीन बंडल है जो काफी भाड़ी है।

इस खाद से किसानों की बहुत सारी फसल अच्छे होते हैं।

यह बंगला जंगल के बीच जंगल मे--

यह एक मंदिर है एवं मंदिर के --

यह बिल्डिंग जो में सामने है वह बन कर तैयार नहीं हुआ है अभी बनने में टाइम लगेगा इसको--

यह रेलवे स्टेशन बहोत ही अच्छा है बहोत ही खूबसूरत है और बहोत ही बड़ा भी है रेलवे स्टेशन --

और एक लोटा भी है लो बर्तन में यहाँ पानी हैं और दो थाली रखे हुए हैं और हल्दी कुछ--